बहोत सारा टाइस हैं जो बिल्डिंग में लगाते हैं।

एक फैन दिखाई दे रही--

एक आदमी था एक आदमी खड़ी हुई है।

और पुरा नजारा बहोत अच्छा है।

बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट कर रही है।

बच्ची कुछ बना रही है।

और इधर एक वाइट कलर का लेके खड़ी है।

एक लड़की है दुकान पे।

इधर तीन पानी की बॉटल है टेबल पे।

एक पेड़ लगी हुई है इस पे।

बहुत सारा खूबसूरत नजारा है इस पे।

दुकान कुछ दुकान है इधर।

कुछ कलर कर रही है।

ये यहां पर तीन जिम ट्रेनर है जिम करते है।

बैडमिंटन चार लोग खेल रही है।

इधर दुकान की समान है।

इधर कुछ प्रोग्राम चल रही है मंदिर में।

और एक चेयर भी है रेड कलर का।

और इधर कुछ खाने का चीजें रखी हुई है।

बहुत सारा पेड़ लगाया हुआ है बहुत खूबसूरत खूबसूरत से पेड़ है।